खिलौने का दुकान है जिसमें एक तरफ पूरी गुड़िया अच्छी-अच्छी गुड़िया को सजाया गया है बार्बी डॉल भी है।

उधर भी और भी एक बोर्ड है जिसका नाम पूरा अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है एक आदमी जो रेड टी-शर्ट में दिखाई दे रहा है एक तरफ एक लेडिस ब्लू शर्ट में दिखाई दे रही है।